यहां पे एक गुफा है जहां पे दो आदमी अंदर जाते हुए देख रहे हैं एक पत्थर पे कुछ--

कई सारे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों भी हैं खिड़की है कई सारे गुब्बारे लगे हुए हैं।

दुकान की अपनी मूवी है ऐंड कई सारे फूगे लगे हुए है झाड़ी-पत्ते--

एंड सलाइवा अलग सलाई लगे हुए हैं फ्रंट साइज फ्रंट गेट के सामने गेट में --

एंड नए न्यू एंड पुराना मॉडल ओल्ड मॉडल सब क सब तरीके के मशीन है यहां पे।

डिप्टी कॉमन शेल्फ फाजिल्का एंड एक खिड़की लगी वेयर कई सारे लाइट है।

यह दुकान है जिसका नाम है द न्यू पोलो जहां पे स्टीयरिंग की पिक्चर लगी हुई है कई सारे गुब्बारे हैं एंड --

नो पार्किंग लोट में दो गाड़ियां ठहरी हुईं हैं ऊपर भी फुगे लगे हुए हैं ये चेयर है यहां पे--

टेपरिकॉर्डर रा मंडप डाले व्हाइट स्टेज पे यहां एक स्टेज है उनके ही पीछे झाड़ है।

एक रोड पे छे बकेट टंगे हुए है जिसके उपर लिखा है सांड एंड खाकी प्लॉट मेड बाई टेरी बेन उसके सामने एक पंजाब का आदमी बैठा हुआ है का--

पहिये दिख रहे हैं और उसके सामने एक बाइक दिख रही है पत्थर दिख रहा है सीढ़ी दिख रही है।

एक मंदिर है और मूर्ति है उसको हार पहना रहे हैं। घंटा टंगा हुआ है। दान पेटी रखी हुई है। गेट लगा हुआ है।

पाइप से पानी दे रही है ओ मास्क लगा के।

मन खुला है ऐंड ब्लैक ऐंड ग्रीन कलर की झाड़ियाँ दिख रही हैं पत्थर है निचे पानी है।

एक गार्डन है पीछे पानी है। एक बच्चा मास्क लगा हुआ है जहां पे खेल रहा है बा--

हैंडई कार है एक स्कूटी टाइप है पार्किंग लॉट में यहाँ कई सारे साईकल ठहरे हुए हैं कई सारे झाड़ियाँ हैं इंस्टिट्यूट हैं।